छोटे-छोटे से सीनरियाँ दिख रही हैं छोटे-छोटे से बनी हुईं सीनरियाँ लगीं हुईं गोल चकोर बैट जैसे डिज़ाइन की हैं कुछ।